एक व्यक्ति अपने कंधों पर बैग टंगा हुआ है प्लेन की तरफ जा रहा है आस-पास घास उगी हुई है तथा छोटे-छोटे पौधे उगी हुई है आसमान में बादल छाया हुआ है।

बिच में छोटी व् बड़ी प्रकार की चट्टाने रखी हुई हे चट्टानो पर छोटी छोटी काई जमी हुई आस पास --

जंगल में पेड़ पोधे लगे हुए।

यह एक क्लॉथस स्टोर है जहाँ बहोत सारे क्लॉथस अलमारी में रख --

अमरुद जेली आली उपर से बेल टंगी हुई--

बिल्डिंग बनी हुई है।